और एक भगवान जी भी इनके खड़े है रखे हुए हैं पीछे।

और एक छोटी सी लाइट भी बगल में रखी हुई है।